यहां पर कारपेट दिख रहा है।

सामने ही एक शो रूम दिखाई दे रहा है।

कुछ जाली वाले वाइट कलर के गेट दिखाई दे रहे हैं।

पीछे हल्का आसमान व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर हमें गेट दिख रहा है।

रेड की छत दिखाई दे रही है।

सिर पर गमछा पहन हुआ है।

हमें कुछ आसमान दिखाई रहा है ब्ल्यू कलर --

यहां पर एक बिल्डिंग दिख रही है पीछे की ओर।

यहां हमें शादी के जोड़े में दो लड़के लड़की दिख रहे--

बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

सामने कुछ फूलो का गार्डन दिखाई दे रहा--

और यहां पर शेड बना हुआ है।

यहां पर हमें एक पक्षी दिखाई दे रहा है।

और सामने हमें ग्रीन कलर का एक खंभा दिख रहा है लगा हुआ।

साथ में ही पीछे की ओर आसमान व्हाइट कलर का है।

ब्राउन कलर का दरवाजा लगा हुआ दिख रहा है और पीछे की और कुछ